और बहोत ब्यूटी फूल लग रहा है बाइक बहोत सुंदर बहोत सुंदर बहोत बहोत ब्यूटी फूल लग रहा है बाइक --

बहोत ब्यूटी फूल लग रहा है ।

बहोत खूबसुरत-खूबसुरत टी-शर्ट है बहोत सुंदर-सुंदर टी-शर्ट है।

छोटा वाला भी मूर्ति बहोत खूबसुरत लग रहा है ।

बहोत सुंदर लग रहा है झोपड़ी बहोत बहोत ब्यूटीफुल लग रहा है।

बहोत सुंदर लग रहा है पेड़--

बैठने वाला बहोत खूबसुरत लग रहा है बहोत ब्यूटी फूल लग रहा है बहोत सुंदर लग रहा है और सजावट बहोत खूबसुरत लग रहा है।

बहोत बहोत बहोत प्यारा लग रहा है गधा बहोत सुंदर बहोत --